सामने बस लगा हुआ है यह टू बाय टू बस है | होट ए.सी और कुल दोनों करता है इस बस से आप कहीं भी जा सकते हैं उधर बिल्डिंग लगा बिल्डिंग बना हुआ है आप यहां आकर रह सकते हैंरूम भाड़ा ले सकते हैं । आपको अच्छे दाम में रूम मिल जाएगा।

ये बस स्टैंड का सीन है यहां आके आप अपना कोई भी जगह पर जा सकते हैं घर जा सकते है मौशियो कन जा सकते है फुआ कन जा सकते है चाची कन आ जा सकते हैं ।

गैरज है यहां पर गाड़ी की वॉशिंग सर्विसिंग बहुत चीज की जाती है आप अपना गाड़ी का सर्विसिंग करवाना चाहते तो यही आइएगा---

ये सामने मंदिर है गिट्टी गिरा हुआ है मंदिर का मरम्मत किया जायेगा गेट वेट टूट गया होगा मंदिर बहुत अच्छा है लाइट की सुविधा है ।